एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है जिसमें नैसक्रिक पर्यतन केंद्र दूरी एक सौ पाँच किमी लिखी हुई दिख रही है।

जो ये भवन का गेट है वो रेड कलर का है कुछ गाड़ियां खड़ी हैं रेड कलर की चेयर्स रखी हैं।

इस इमेज मे हमे एक जो है पुरानी सी इमारत दिख रही है।

और कुछ बड़े-बड़े अलंगे रखे हुए दिख रहे हैं।

हाफ वाइट कलर से पेंट है कुछ लाइटिंग दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक जो है बड़ा सा आइसक्रीम पालर दिख रहा है।

और कुछ लड़के लड़कियां बैक टांगे हुए जा रहे हैं बड़ा सा आसमान दिख रहा है कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

गुरुद्वारा जो वाइट कलर से पेंट है फ्लावर से डेकोरेट है।

एक येलो कलर का बैरिकेड दिख रहा है वाइट कलर की पेन दिख रही है।

ब्लैक कलर के जो जाली वाले गेट दिख रहे हैं पत्थर दिख रहे हैं।

आसमान दिख रहा है कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं वाइट कलर के घर दिख रहे हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे टैटू लिखा हुआ है।

इस इमेज में हमें एक बड़ी सी नर्सरी दिख रही है जहां कुछ छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

ऑफिस दिख रहा है ऑफिस में जो है ब्राउन कलर का फर्नीचर रखा हुआ है ब्लैक कलर की चेयर्स रखी हैं चेयर्स में कुछ लोग बैठे हैं।

इस पेट्रोल पंप में बहुत सारे जो है एक्टिवा खड़ी हैं कुछ लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं एक जो है ऑरेंज कलर की कार खड़ी है।

एक शॉप दिख रही है जिस पे शुभारंभ लिखा हुआ है।

पर्पल और वाइट कलर के बैलून्स डेकोरेट है गेट --

तार दिख रहे है रेड कलर के चेयर रखी हुई दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक स्काई ब्लू कलर का--

इस इमेज में हमें एक जो है टॉयज़ की बड़ी सी शॉप दिख रही है यहाँ बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं।

अंदर दो आदमी खड़े हुए हैं एक स्टील की रेलिंग दिख रही है।

वाइट कलर की ब्राउन कलर की बेडशीट बिछी हुई है।